''यहाँ मेम बच्चे लोग के बैठ के नजर रख रही है बच्चे लोग यहा कुछ कर रहे है यहाँ बच्चे कुछ पेपर से कुछ बना रहे है।''

यहाँ पे लड़की लोग योगा कर रही हैं एक लड़की जूता पहनी हैं। पिंक कलर का टी शर्ट हैं। व्हाइट पैंट हैं। भैया ये लोग से योगा करवा रहे हैं।

बहुत सारा मास्क से बनाया हुआ हैं। एक लेबर भी और उठाया हुआ है गिट्टी उठाके मशीन मे डाल रहा हैं।

और क्या इनका पीछे एक पर्दा है पर्दा के पीछे खिड़की हैं खिड़की के बगल मे एक घड़ी है एक पंखा लगा हुआ है वहां पे एक चार्जिंग पिन हैं।

पाँव टूट गया है इनका पाँव में लगा हुआ है पाँव में घुटना में फिर उसके पीछे एक पेपर में कुछ रखा हुआ है | ये वाला भी पाँव में लग गया है ये पर्दा है।

ये खिड़की है ये बगल मे घरी दिख रहा है ये बेड पे सोये हुए हैं बेड के नीचे टाइल्स बीछा हुआ है|